ये एक हॉल दिखत रहा है यहाँ पर बहोत सारे लोगोन दिखत रहै है बहोत सारे लोगियन भी दिखत रही है।

चार पांच समेत के खंभे दिखत रहै है बिजली जलती हुई दिखत रही है।

हाई के खम्बे दिखत रहे है नीचे कचरा पड़ा हुआ दिखत रहा है।

इसमें बहुत सारे कपड़े रखे हुए दिखत रहे है बहुत सारी बिजलियाँ जलती हुई दिखत रही है दोई तीन पंखा ओ अन दिखत रहे है।

फ्लाइट के वायरअन दिखत रहै दरवाजे दिख रहै है एक लोहै का होल्डिंग लगा हुआ दिखत रा है।

ये एक होटल दिखत रही है इसमें सफ़ेद कलर की टेबल मन लगी हुई दिख रही है दोई तीन कुर्सियां मन लगी हुई दिखत रही है।

ये एक रोड दिखत रहे है यहाँ पे बहुत सारे लोगन दिखत रहे है दोई तीन बाइकएन दिकत रही है दोई तीन ऑटो भी दिखत रहे है।

डॉक्टर अन दिखत रहै है कुर्सियां लगी हुई दिखत रही है बोतल रखी है बैग उन दिख रहै है ऊपर --

पोस्टरोन लगे हुए दिख रहै है घड़ी लगी हुई दिख रही है गेट दिख रहा है।

ये एक स्कूल दिखत रहा है इसके बहोत सारे पिलर दिख रहे है जो की लाल कलर के है खिड़कियों दिखत रही है दरवाजे दिख रहे है दोई तीन लोग लोगोन दिख रहे है।

ये एक कैफ़े दिखत रहा है यहाँ पर कुर्सिया लगी हुई दिखत रही है टेबल लगी हुई दिखत रही है ओकरे ऊपर जग रखे हुए है।

यहाँ बहुत सारी बिल्डिंग दिखत रही है उसकी खिड़की अन दिखत रही है लोहे के खंभे दिखत रही है बिजली के वायर दिख रही है नीचे बहोत सारी दुकाने दिखत रही है दुइ तीन--